बगल में एक बहुत बड़ा पेड़ भी नजर आ रहा है।

उसके पीछे एक और आदमी खड़ा है और ए_सी भी रखा हुआ है वाइट कलर का।

और छोटे छोटे पौधे और घास भी दिख रहे हैं।

इस फोटो में एक तालाब का फोटो है जिसमें छोटे छोटे पौधे और फूल पत्ती उगे हुए हैं।

कुछ लोग खड़े हो के भी काम कर रहे और देख रहे हैं।

इस फोटो में एक ढाबा दिख रहा है जिसका नाम खाना खजाना डी ढाबा है और रेस्टोरेंट भी है यह चीज बोर्ड पर लिखा हुआ है उसके ऊपर--

तीनों लेबर गंजी पहने हुए हैं एक ठो ब्राउन कलर का और दो ठो व्हाइट कलर का।

इस फोटो में एक ठो हॉस्पिटल दिख रहा है जिसका नाम ध्यांचल हॉस्पिटल है और इसके बगल में हिंदी में भी लिखा हुआ है।

यह सारे फूल सेप में है सर्कल और छोटे छोटे घास भी है।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

बाहर में पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।